इसे कपड़ों से सजाया गया है और उस कपड़ा का कलर है पिंक ।

यह एक मॉल का एक दृश्य है जिस दृश्य में बहुत सारा सामान रखा हुआ है कुछ बिस्किट है।

इस दृश्य में एक बहोत बड़ा सा तालाब दिखाया गया है जिस तालाब में थोड़ा सा चमक है।

इसमें की एक लाइट लगा हुआ है ऊपर की ओर और गूगल पे का स्कैनर चिपका हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं और बैठने के लिए बहुत सारे जगह हैं।

यह एक फोटो का दृश्य है जीस दृश्य में एक थाना दिखाया गया है जिसका नाम डेली मार्केट थाना है।

इस दृश्य में बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई जा रहे हैं।

कुछ आइसक्रीम का चित्र ब्राउन कलर का बना हुआ है।

थोड़े से खाली ग्राउंड भी है इस ग्राउंड में एक कुर्सियां भी है।

जिसका पेंट का कलर व्हाइट है और ब्लेजर का कलर ब्राउन है।

दृश्य में बहुत सारे बस भी है जिसका कलर पीला कलर है और बहुत सारे पेड़ पौधा भी है इस दृश्य में।

जिसमें की कुछ चक्के मोटे हैं कुछ चक्के पतले हैं।

नीचे दो तीन डंबल रखे हुए एक शीशा है कुछ डेडलिफ्ट लगाने के सामान भी रखे हुए हैं।

यह एक फोटो का दृश्य है जिस दृश्य में बहोत सारे बसें दिखाए गए--

इस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति भी बैठा हुआ--

घेरा के अंदर छोटे-छोटे पेड़ भी रखे हुए छोटे-छोटे पौधे भी रखे हुए और एक थोड़ा सा बड़ा पेड़ भी है।

एक व्यक्ति कंबल ओढ़ के सोया है उस व्यक्ति के बगल में उसका सूटकेस --

ऊपर एक लाइट जल रही है और दो तीन पंखे भी चल रहे हैं।

जिसके अगल बगल में बहुत सारे प्राकृतिक पुष्प लगे हैं रंग बिरंगे पुष्प लगे हैं।

एक शीशा के अंदर बहोत सारे बोतले रखे हुए है।

इस फोटो के दृश्य में बहौत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं छोटे छोटे पौधे लगे हैं।

उस दृश्य में एक व्यक्ति चल रहे हैं और एक व्यक्ति बाइक पे जा रहा है।